पेन्ट हो रखा है और कुछ पेड़ भी मंदिर के ऊपर छत पर दिखाई दे रहे हैं ये मंदिर कहाँ पर है ये नजारा कौनसे मंदिर का है।